ये एक मार्केट एरिया है जहाँ पे दुकान दिखाई दे रहा है।

आदमी बैठा है अम फलो का के अंदर औ पल बिकने वाला है।

ये एक बड़ा सा वाइट कलर का बिल्डिंग है जो कोई इंस्टिट्यूट का बिल्डिंग है जिसका नाम है साई बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन --

यहाँ पे नीचे में एक औरत खड़ी है सलवार पहन के पास में दिखाई दे रहा है गाड़ी का पीछे वाला सीन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे भी घूम रहा है बाहर में भी सीटों का बाहर पे भी घूम रा --

प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ खेलने के लिए योगा भी प्रैक्टिस कर रहे।

यहाँ पे पुलों के अंदर जो पानी है उसमें कुछ बंदा औरत आदमी यहाँ पे खड़ा है।

वहाँ पे साइड में इधर दो रास्ता दिखाई दे रहा है।

और इधर साइड में कुछ जीमो का मशीन दिखाई दे रहा है।

रैक दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का पीछे --

यहाँ पे एक वाइट कलर का बहोत सारे मारुति कार् ब्रांडेड कार् खाड़ी है।

यहां पे एक बॉक्स जा रहा है। स्काई कलर का येलो कलर का बॉक्स है ये--

लिखा है अल्ट्रा टेक बिल्डिंग सलूशन यहाँ पे सीमेंट का बस्ता बी है।

एक यहाँ पे दो तीन बंदा दिखाई दे रहा है वो लोग देख रहा है।

यहाँ पे साबुन ऑयल ऑयल का जार यहाँ पे डाइपर्स वगैरा हॉर्लिक्स का डिब्बा --

यहाँ पे एक गड्डा टाइप का है जहाँ पे नीचे से कुछ काम हो रहा है।

बच्चे लोग यहां पे सुंदर सा ड्रेस पेहन के व्हाइट कलर का मेरुन कलर का ड्रेस पेहन के यहां पे नृत्य करने के लिए--

मा माथे मे टोपी पहेन के रखा है वो क्रिसमस का जो टोपी होता है वो पहेन के रखा है।

यहाँ पे एक चौड़ा सा बड़ा सा रोड है पीछों का रोड जहाँ पे पास में कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इस साइड में गार्डवाल दिखाई दे रहा है।

अअ जेंस करमन का बहुत सारे चीज है जैसे --

यहाँ पे अम्म एक पेट दिखाई दे रहा है पास में भी छोटा छोटा म्म पेड़ का पत्ता दिख रहा है।

आ पास में बहुत सारे आदमी औरत खड़ी है एक औरत चारों आदमी खड़ी है एक आदमी के गोदी में एक बच्चा खड़ी है।

यहाँ पे एक शोरूम दिखाई दे रहा हैजहाँ पे ट्रैक्टर बिकता है।

वाइट रेड वाइट ब्लू कलर का ट्रैक्टर है।

वाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का बैलून देके सजा के रखा है एक बंदा उधर से इधर आड़ा है।

यहाँ पे में तीनों में पहन के रखा है तीनों वेस्टर्न ब्लेजर टाइप का जैकेट। --

ये एक बड़ा सा वाल में काँच दिखता है काँच के आ --

यहाँ पे एक सीमेंट का और लोहे का बहुत सारा बड़ा गेट एक दिखाई दे रहा है।

एएए एक पार्ट टाइप का है जहाँ पे म्म बहुत सारे पेर है ये रातों का सीन है आड़ बीच में एक --

वो लोग का सामने एक एक करके बोतल है वाटर बॉटल --

उसमें एक बंदे का चित्र है जिसमें वो बंदे का माथे में एक टोपी है जो उसका आँख बंद करके रखा है।

यहाँ पे एक दुकान दिखाई जा रहा है काँचों का गेट दिखाई दे रा --

यहाँ पे एक बड़ा सा गणपति बाप्पा का मूर्ति है जहाँ पे पेंडल करके रखा है सुंदर सा सजा के लाइव देके --

यहां पे दो साइड में बहुत सारे बंदा खड़ा है। व्हाईट कलर का टोपी पहन के जींस पहन के शर्ट टी-शर्ट पहने के --

ये कॉपीज का चित्र है जहाँ पे क्यूबिकल है सेपरेट सेपरेट --

यहाँ पे अभी उधर एक बंदा बैठा है जीम कर रहा है।

यहाँ पे जीम करने का बहुत सारे मशीन हैजो कार्डिया करने का मशीन --

उस साइड में और भी एक बंदा बैठा है उसका और एक बड़ बड़--